और यहां पर एक पुल भी बना हुआ है और इनके नीचे बहुत ही बड़े बड़े पिलर भी लगे हुए हैं और यह पानी बहुत ही ठंडा लग रहा --

हरियाली भी है और यहां पर एक लाइट भी लग रही है और यहां पर बहुत ही सुंदर-सुंदर पेड़ भी लग रहे हैं।

ऐ और यहां पर सभी बर्तन और टब वगैरा मिलते हैं और यहां पर एक आदमी खड़ा ऊआ है।

यह फोटो हमें अब बहुत ही सुंदर मूर्तिकार का लग रहा है। यहाँं पर छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यह मुझे बहुत ही कलाकारी से बनाइ गई हैं।

यह फोटो हमें किसी मंडी का लग रहा है और यहाँ पर बहुत सी पुरानी दीवारे हैं और यह दिवारे बहुत ही मजबूत लग रही है और यह दीवारे सफ़ेद कलर की है।